पूरी तरह से हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है।

ये ऑफिस का एरिया है यहाँ सब अपने कंप्यूटर पर बैठ कर वर्किंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रेपर किया हुआ है साथ में गमले रखे हुए है।

ये शाम का वक्त है नदी में धूप की सुनहरी किरणें पड़ती हुई बहोत अच्छा लग रहा है साथ में पेड़ भी है।